यह धान की खेती की इमेज है धान भारत का मुख्य फ़सल है मुख्य तौर पर मानसून की खेती है लेकिन धान कई राज्यों में--

यह एक मजार की इमेज है मजार दुनिया की कई स्थानो मे नजर आते है आम तौर पर मजार एक संत या उल्लेखनिय धार्मिक व्यक्ति की बनाई जाती है।

यह एक डी.जे. की इमेज है पहले डी.जे. की डिमांड शहरों में हुआ करती थी लेकिन धीरे-धीरे गांव में भी इसकी डिमांड बढ़ गई है।

और कुछ ऐसा ही यात्रियों और उनके सामानों के साथ भी होता है किसी यात्री--

यह एक चर्च की इमेज है चर्च शब्द यूनानी विशेषण का प्रवंच है जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रभु का वास्तव में चर्च और गिरजा --

आज के जमाने में सलून बहुत से लोग सालों खोलना चाहते हैंजिन्हें अलग-अलग हेयर कटिंग करने का शौक होता है।

जैसे छोटी बड़ी वस्तुओं के लिए हाट बाज़ार पशुओं के पशु बाजार।

यह एक चर्च की इमेज है चर्च शब्द उमानी बिशेसो का अपभ्रंश है।

जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रभु का वास्तव में चर्च और गिरजाघर भी--

पड़ती है पेट्रोल का उपयोग हल्के वाहन जैसे स्कूटर मोटर बाइक ।

चलाने के लिए किया जाता है उसका प्रयोग बाहयानों में इधन के रूप में भी किया जाता है।

यह एक जंगल टीम की है जंगल वह जगह है जहां पर आप वर्ष का वृक्ष उज आई हो--

यह एक जंगल की इमेज है जंगल वह स्थान है जहाँ अपने आप वृक्ष वा वनस्पति उगाई हो।

यह एक मेन सलून की इमेज है हैरकट्टिंग आपका मेकओवर है यह आपकी इमेज मेकिंग है हेयर स्टाइल तभी बेहतर हो पता है।

यह एक मजार की इमेज है मजार दुनिया की कई स्थानो मे नजर आते है आम तौर पर मजार एक संत या उल्लेखनिय धार्मिक व्यक्ति --

टीकी कि बनाई जाती है इस मजार के लिए दुसरी शब्द जैसे मकाम मसद या दरिया भी --

कारोबार और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना वैक्त की जा रही है विभागीय अधिकारियों के अनुसार--

पूछ -ताच कर सकते हैं अथवा अपने प्रिय जनों को धन भेज सकते हैं अथवा किसी भी समय बिलों का भुगतान कर सकते है स्टेट बैंक सरल सुविधा कहीं भी--

और कभी भी बैंकिंग की सुविधा देता है।

यह एक सीएट टायर की शॉप है आर.जी.पी. समहू के स्वामित वाली एक भारती टायर प्रोडक्शन कंपनी है इसकी स्थापना उन्नीस सो इक्कीस में --

यह एक मैन सैलून की शॉप है पहले के जमाने मे नाई जात के लोग नाई की दुकान खोला करते थे आज के जमाने मे सैलून बहुत से लोग खोलना चाहते है।

जिन्हें अलग-अलग हेयर कटिंग करने का शौक होता है आज के समय हेअलग-अलग हेयर स्टाइल हमेशा सोशल मीडिया पर ट्रेंड रहती है।

यह एक ब्रिज की इमेज है जब की किसी रोड के निर्माण करने के दौरान एक नदी से उसे पार कराना होता है तब ऐसी जगहों पर--

पानी में तैर कर पार नहीं हो सकती इसलिए उन्हें एक ब्रिज की आवश्यकता होती हैएक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए।

जल्दी ही भारत के अनेक स्थानों पर पत्थर और इट के मंदिर बनने लगे हैं सातवीं शताब्दी तक देश के--

अरे संस्कृति वाले भागों में पथरो से बने मंदिरों का निर्माण होना पाया गया है।

इस मजार के लिए दूसरे शब्द जैसे मकानमसद या दरिया भी इस्तेमाल किया जाता है।

आकस्मिक तरीके से उड़ा हुआ होता पर वह लगातार समूह में--

स्टेज बनवाते समय आप अपने पसंद का तो ध्यान रखें ही साथ ही यह ध्यान रखे की उस चीज बहुत ज्यादा ना हो ये एकदम खूबसूरत और यूनिक लगे।

सर्वोदय नामक जीव विज्ञानिक स्कूल के सदस्य होते हैं इसे दो भागों में श्रेणीगत करा जाता है सर्वे नायक --